सामने एक पौधा लगाया हुआ है। मैडम भी खड़ी हैं देख रही हैं।

यहाँ गेहूं पिसने की मशीन है। बोहोत सारे बोरे में लगा रखे हुए हैं गेहूं बोहोत सारे आदमी हैं। साइड में बोहोत सारे पेड़ है।

और भी चीजें हैं डस्टबीन भी है।

आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन होने वाला है जो की बहुत अच्छे से सजाये जा रहे हैं इसको ।